एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन खड़ा है चार-पाँच में बहुत सारे लोग भी खड़ा है।

सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस बहुत बड़ा है इस ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं।

नदी बहोत बड़ा है नदी के पार में एक नौका खड़ा है नदी के पार में कुछ लोग भी खड़ा है।

दुकान के अंदर भी बहुत सारा ड्रेस हैं इस दुकान में रोज़ बहुत लोगों का भीड़ होता हैं।

ईधर एक छोटा-सा जलाशय दिखाई दे रहा है जलाशय के पास एक फील्ड है।

इस दुकान में रोज बहुत लोगों का भीड़ होता है।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

एक स्टूडेंट खड़ा है पास में भी एक फ्लोर में स्टूडेंट बैठे हैं।

स्कूल बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं।

दूर में एक ग्रीन कलर की एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है।

सामने एक फील्ड दिखाई दे रहा है फील्ड बहोत बड़ा है फील्ड में एक बाइक खड़ा है फील्ड मे एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।